इस तस्वीर में एक कसरत करने वाली एक म अ झूला दिख रहा है इसके आगे एक खिड़की दिख रहा है।

यहाँ पर एक सफेद रंग की ईमारत के पास कुछ व्यक्ति लोग खड़े हुए नजर आ रहे है सभी ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे है।

महिलाओं ने अपने सर पर सफेद रंग की कुछ फूलों का कुछ सहरा पहन रखा है और पीछे दीवार पर सफेद रंग किया गया है।

यहा पर रैत भी दिख रहा है और हरे भरे पैद पोधे पर फूल भी लगे हुए है।